जय भीम का फोटो लगा हुआ है माइक से बोल रहा है।

बुड्ढा आदमिन बैठल हे कुर्सी पे.

इसमें सलाद है चिकन है और अं सादा चावल है रोटी है.

रेत है बालू का रेत है।

और इधर बीष्णू भगवान का फोटो है.

ओर इधर लेज के लेज कुरकुरे मिक्चर .

छत है बोल है तार हे और रिक्शा जैसा दिख रहा है यानी रिक्शा नहीं है.

बोहोत सारे इस्कूटी लगा हुआ है और आदमिन खड़ा लोग है यानी सात आठ आदमिन है खड़ा.

और रोड क्रॉसिंग है और एटा का अं टाइसिंग बिछाया हुआ है.

यह जोल जारने वाला भी है टेबुल है.

और बेंच पर बैठकर के स्टूडेंट लोग का टी ट्यूशन करने वाला है धीरेंची है।

और बोलने के लिए बैठा हुआ है जिससे लग रहा है कोई चीज का शप्त बुलाया जा रहा है.

और तीन खिड़की है.

आदर्श स्टूडियो हे प्रज्ञा केंद्र हे ग्राहक सेवा जैसे हे.

इधर शीशे का दरवाजा लगा हुआ है लाइट दिख रहा है व्हाइट कलर का पूरा बिल्डिंग है।

बड़ा सा गणेशजी के अ हं गले में मोती है। ओर दो अं दो हाथ इधर है। एक हाथ में चक्र है। एक हाथ में आशीर्वाद--

तीन तरह का है एक पीले बोर में है एक वाइट बोर में है।

और उधर पा-पानी टंकी रखा हुआ है इधर खिड़की है और इधर लगा हुआ है.

पिंजरे मे दो तोते हे पीड़ा है.

है इधर किसी चीज का और पेड़ है.

और अं एक आदमीन बैठा हुआ है टेबुल है टायर दुकान है ऊपर छत है.

पहाड़ है आसमान देख रहा है थोड़ा बादल किया हुआ है।

और इधर भी चरखोट कलर का लगा हुआ है।